कट्टर के डिब्बे रखे हुए हैं।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं।

ऊपर टीन के अल्बेस्टर मैजूद है।

भीतर एक ब्लू रंग की तिरपाल नजर आ रही है।

पीछे एक सफेद रंग की बिल्डिंग है इसके ठीक सामने एक ओयो का पोस्टर है।

जैसे स्पाइडरमैन के मास्क उसके ठीक नीचे चप्पले है।

मेज के ठीक ऊपर एक बोतल है।

आसमान में थोड़े थोड़े बादल छाए हैं नहीं तो आसमान साफ ही दिख रहा है।

यहां बहुत सारी कार पार्क की हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप जिसके ऊपर दयाल पेट्रोल जोन लिखा हुआ है।

सामने केक दिखाई दे रहा है।

यहां बैठने के लिए सीट भी बनाया गया है।

यहां एक पोस्टर पर प्रवेश निषेध नो एंट्री से लिखा हुआ है।

पुलिस कर्मी की ठीक सामने एक आदमी ट्रॉली बैग के साथ बाहर आते हुए दिख रहा है।

ठीक सामने ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है।

नीचे एक येलो कलर की बनी हुई वस्तु नजर आ रही है।

यह किसी शादी का फंक्शन है जिसमें नीचे रेड कारपेट बिछा हुआ है।

छे गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है।

यह एक मॉल की तस्वीर है जिसके बाहर बी_के_बी मॉल लिखा हुआ है।

साइकिल रखा हुआ है साइकिल के ठीक आगे दो पेटी दिखाई दे रही है।

नजर आ रही है और आसमान में कोहरा छाए हुए हैं।